एण्ड यहाँ पे कुछ लड़कियाँ है इन्हे ब्लू कलर की टी शर्ट --

ये एक इमेज है जिसमे एक एयरोप्लेन है एयरोप्लेन एयरोप्लेन का कलर वाइट एंड रेड है।

ये एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है जहाँ पे एक रोड है।

ये एक इमेज है जहाँ पे पेड़ है पेड़ का कलर ग्रीन है येन स्काई ब्लू कलर का एक बोर्ड हैं ।

एंड ब्लू कलर की उसमे टाइपिंग है एंड ब्लैक ब्लैक कलर की बाइक है एंड वाइट कलर की बिल्डिंग है एंड --

वाइट येन स्काई ब्लू इसमें गेट है येन आ स्काई का कलर वाइट है और ब्लू है यहाँ पे --

--कॉलीफ्लॉवर एंड केरट पोटैटो एंड आ टमैटो का आ कलर रेड है एंड केरट का कलर --

रेड एंड वाइट में है एंड पीछे एक दीवाल है और उसका कलर वाइट है एंड स्काई का कलर वाइट है एंड ब्लैक कलर का--

यह पेंटिंग है और यहाँ पे बलून से डेकोरेशन है एंड यहाँ पे केक है और गिफ्ट्स है और कुछ लोग हैं।

ये एक इमेज है जहाँ पे स्काई है स्काई का कलर आ पर्पल एंड वाइट में है एंड घास है घास का कलर ग्रीन हैं ।

एन ब्राउन कलर का सोफा है ऐन ब्लैक कलर का कबर्ड है।